अच्छा तो ये है यहां पे कैफे पुलिस बुक्स ऐसा कुछ है।

ये तो वैसी फोटो है ये इसमें कुछ लोग आए हुएं हैं।

ऐसा ऐसी आपको हरियाली ऐसा डिजाइन मतलब ऐसे माहौल न देखने को लग रहा है ऐसे इस चंडीगढ़ में ही मिलेगा।

पंचकूला साइड की फोटो है शायद--

ये फोटो चंडीगढ़ के किसी नहीं किसी आ गाड़ी की फोटो है ये चंडीगढ़ सेंडीगड की नहीं हैं नबर तो शायद इसमें कहीं और की लिखा हुआ है।

अ तो मतलब ऐसा नही होता कि मतलब वहाँ पे न थोड़ा बुकिंग करते हैं मतलब अर्रेंजमेंट्स होती है तब आते हैं।

ये फोटो कुछ नहीं ये एक सिंपल सी फोटो है इसमें दो तीन लड़के हैं ये स्कूल के लड़के हैं जहां तक देख के लग रहा है शायद --

अह क्या नाम है कौन सी कंपनी क्या लिखा है पता नहीं ये जिम की फोटो है इसमें पंखा लगा हुआ है साइड में।

ये अ अंदर होंडा की एजेंसी है कुछ व्हीकल सेकंड हैंड या फिर न्यू मिलती होगी यहां पे ऐसी एजेंसियों --